यहाँ पर दो तीन स्टाल भी बने हुए हैं जहाँ पर काफी सारी चेयर और टेबल भी रखी हुई है। यहां पर दो फैन हैं।

ऊपर लगी हुई तीन फोटो फ्रेम भी दिख रही है और यहाँ पर काफी बड़ी-बड़ी एल_इ_डी भी लगी हुई हैं| नीचे रखी एक रेड कलर की चेयर भी दिख रही है यहाँ पर डेस्क पर पड़े कुछ कपड़े भी दिख रहे हैं।